अ गार्डन मे पेड़ वगेरा रहते है वो पेड़ दिखाई दे रही है झंडी वगेरा भी यहाँ पे अ लगी हुई है वो भी हम दिखाई दे रही है |

लगी हुई है और ये मतलब जो है अंदर से व्हाइट व्हाइट से दीवाल है जैसे व्हाइट व्हाइट सी यहाँ पर दिखाई दे रही है।

और ये मूर्ति एक टेबल जैसी है उसपे ये मूर्ति जो है आ रखी हुई है और ये ब्लैक दिखाई दे रहा।

एक चेयर भी यहाँ पे रखी हुई है और यहाँ पे और भी अदर काफी सारी चेयर है जो ब्लू ब्लू कलर में दिखाई दे रही है फैन वगैरा --

आ मतलब कपड़ों की शॉप लग रही है सॉरी ये कपड़ों की शॉप है काफी सारे बच्चों के कपड़े रखे हुए हैं।

यहाँ पर एक जैसे कुछ बना हुआ है किला जैसे कुछ बना हुआ है ये पूरा गोल्डन कलर का दिखाई दे रहा है यह काफी बड़ा इ यहाँ पे |

आंटी बैठी हुई है और ये मतलब कुछ लैपटॉप जैसा रखा हुआ है जिस पे कुछ काम कर रही है और खिड़की दिखाई दे रही है खिड़की जो है ये --

खुली हुई दिखाई दे रही है और इस ये चेयर पे दोनों बैठे हुए है और ये मतलब अंदर अंदर है इसमें फोटो वगैरा भी एक --

आ मतलब पिंक कलर की और ग्रीन ग्रीन सी यहाँ पे लाइटे भी दिखाई दे रही है।

यहां पे एक घर जैसा दिखाई दे रहे हैं जो कि दो-तीन मंजिल के यहां पे दिखाई दे रहे हैं।

और काफी बड़ा यहां पे एक ग्राउंड जैसा भी दिखाई दे रहा है इसके पीछे बाउंड्री जैसे उठी हुई है और आसमान पूरा नीला सा यहां पे --

बैठने के लिए राखी हुई हैं।